ये एक बहोत बड़ा मंदिर है मंदिर--

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने एक पा एक सड़क है और आस पास लोग खड़े है आस पास एक --

इन साइडो में घने घने घास हो रखे हैं।

घने पेड़ पौधे हैं और एक आस पास एक मकान भी है और आस पास--

बहोत सारे पौधे और अच्छे से बगीचे बने हुए हैं यहां पे--

वगैरा भी खड़े हुए हैं आस पास में--

आस पास सब घर अच्छे बने हुए हैं और बाहर--

ये एक क्लोनि है क्लोनि का रंग रेड कलर पैंट हो रखा है।

दो तीन पेड़ लगे हुए हैं और यहां पे एक ग्राउंड भी हैं ग्राउंड के पास--

ये एक ऑफिस है ऑफिस की लाइटे लगी है सामने बोतल रखी है बड़ा अच्छा ऑफिस है साफ सुथरा ऑफिस है।

और काफी बड़ी बिल्डिंग है ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग --

ये सामने एक घर है घर कैसे बहुत बड़ा घर है नीचे गमले और--